और इसके बाहर लकडियो को बोहोत अछे से सेट करके रखा गया है।

और इसे कही कही पर पट्टिया दी गयी है सफ़ेद कलर की --

और यहाँ पर सफेद कलर का पोस्टर लगा है उस पर ब्लू कलर से लिखा हुआ है।

कुछ डांसिंग परफॉर्मेंस डांसिंग क्लासेस चल रही है सामने --

फैन्ट है यहाँ पर ऊपर वाइट कलर की लाइट लगी हुई है इसमें लड़के लड़कियाँ--

ब्लू और रेड कलर की है सामने इनका जो फ्रंट गेट है वहां ऊपर की तरफ--

हे और पीछे की तरफ कुछ पेड़ लगे हे यहा पर एक गेट वाइट और ब्लेक लोहे का लगा हुआ हे साम --

स्टैन्ड पर पोस्टर लगे है जो की फूड आइटम के है बाहर की तरफ़ गमले रखे हुए है रेड कलर के--

कुछ ऑटो रिक्सा है कुछ स्कूटी और बाइक भी खड़ी हुई है और यहाँ पे बोहोत से--

उपर की तरफ यहा बोहोत ही सुन्दर वाइट कलर की लाइटिंग लगी हुई है उपर --

यहा पर एक ग्राउंड हैं ग्राउंड बहोत सारे प्लेयर फुटबोल खेल रहे हैं और बीच में एक रेड कलर का झंडा लगा हुआ है ।

यहा पर एक शॉप है शॉप में बोहोत सारि येलो और वाइट कलर की लाइटिंग लगी हुई है।

द वाइट क्रू के नाम से यह शॉप हैं और शॉप के सामने एक वाटर पार्क हैं जो बहुत ही सुंदर हैं जिसमे कलरफुल --

यहाँ पर कुछ टेबल और चेयर रखे हुए है और इस टेबल पर रेड कार्पेट बिछा हुआ है।

और ऊपर की तरफ कुछ लाइटिंग्स लगी है जो डेकरैशन के लिए सामने एक पोस्टर टांगा है जो ब्लू कलर है।

फ्रंट गेट पर येलो लाइट है कुछ बेल लगी हुई है ग्रीन --

एक कार और एक साइकल्स जा रही है और रोड के दूसरी तरफ बोहोत सारे बड़े पेड़ लगे है।

यहाँ पर एक स्कूल हैं जो गवर्नमेंट मॉडल हाई हाई स्कूल हैं जहाँ पे लोहे का एक गेट लगा हैं ऊपर कुछ वाइट कलर का पोस्टर लगा हैं जहाँ पर --

ऑटो और बाइक निकल कर जा रही हैं बहुत से यहाँ पर लोग पैदल भी जा रहे हैं पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हैं दोनों तरफ बहुत सारी--

और यहा पर एक छत बन रही है छत बनने का काम चल रहा --

एक व्यक्ति खड़ा है उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए है पीछे भी कुछ मल्टियाँ बनी हुई है ।

यहाँ पर एक नदी है और नदी में बहुत सारी चोटी चोटी बोटस पड़ी लगी हुई है जो--

और सामने यहा बोहोत सारे पेड़ लगे हुए है और --

सामने एक छोटा बेड लगा हुआ है जिस पर --

यहाँ पर कुछ मलतिया बनी हुई हैं जिन्हें लाइटिंग से बहोत अच्छे से डेकोरेट किया गया हैं जहा पर पिले लाल और हरे कलर कि ---

लाटिंग लगी हुई है ऊपर फ्रंट में वाइट कलर की लाइट्स लगे हुए है सामने जो मलटीया है पीले कलर की है इसमें येल्लो लाइट्स लगी है और बहार की तरफ सफ़ेद --

और पीछे की तरफ कुछ पेड़ है और कही कही पर दूर घर भी बने हुए है।